बहोत घना जंगल है और घने घने पेड़ पौधे वृक्ष है।

यहां पर हमें एक गेम जोन दिखाई दे रहा हैं जहां पर--

छोटा सा तालाब जो है वो बना हुआ है और इसमें एक--

फाउंटेन बना हुआ है जहां पर की हमे कुछ डक घूमती हुई।

जो यहाँ पर पैक किए हुए पॉलीथिनस में अरेंजमेंट वाइज जमे हुए है।

यहां पर अह कुछ लेडीज है जो घूमते हुए दिखाई दे रही हैं।

यहां पर हमें एक जंगल नजर आ रहा है।

इस जंगल में हरे भरे वृक्ष पेड़ पौधे जंगली घास जंगली पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।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

दिवालो पर कुछ बैनर टाइप लगा हुआ है।

यहां पर एक स्टेशनरी दिखाई दे रही है जहां पर तीन कस्टमर्स एक बच्चे के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक वाइट शर्ट में व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके पीछे की तरफ एक--

इस फुटपाथ पर ब्लॉक्स लगे हैं रैड कलर के।

यहां पर हमे एक सुजुकी का शोरूम दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर सफ़ेद कलर के बोरे में भी कुछ सामान भरा हुआ है।

यहां पर इन पहाड़ों पर जंगल बने हुए हैं।

बहोत सारी ऑटो रिक्शा गुजरती हुई जा रही है और--

यहां पर हमें एक वीडियो कैमरे का शोरूम दिखाई दे रहा है जिसमें--

अह कुछ डॉक्टर्स की लिस्ट दिखी दिख रही है जो ऊपर बोर्ड में लगी हुई है।

अह टूल्स टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक होटल दिख रहा है जिसके गार्डन मे चेयर्स और टेबल्स का अरेंजमेंट किया गया है।

यहां पर और बहोत सारे लोग बैठकर देख रहे हैं।